पिक्चर में एक लड़का दिखाइ दे रहा है और लड़के ने रेड कलर की टी-शर्त पेहेन के रखी हुइ है लड़के ने --

ब्लु कलर का केप भी लगा के रखा है लड़के के पीछे बहुत बड़ा माउंटेऩ दिखाइ दे रहा है और लड़के के पीछे बहुत सारे पेड़ भी दिखाइ दे रहे है कुछ पेड़ छोटे दिखाई दे रहे हैं तो कुछ पेड़ बहुत बड़े दिखाइ दे रहे हैं और उन पर हरी-हरी --

इस पिक्चर में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है और नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और एक बहुत बड़ी नाव चल रही है नाव में एक व्यक्ति बैठा हुआ है।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

और बहोत सारी लेडीसें भी दिखाई दे रही हैं और कुछ लेडीसें चल रही हैं तो कुछ लेडीसें बैठी हुई हैं और यहाँ पर बहोत से बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही हैं कुछ बिल्डिंगें कम्पलीट हैं तो कुछ बिल्डिंग --